यहाँ पे स्टैंड दिखाई दे रहा है देखने पर लग रहा है बस स्टैंड है क्योकि यहाँ पे बहोत सारी बस खड़ी हुई है और एक बाइक वाला है सामने जो बाइक पे बैठा हुआ है कुछ लोग भी दिखाई दे रहे है जो आपस में चर्चा कर रहे है और--

यहाँ पे एक बैनर लगा गया है जिसपे लिखा है भारत पेट्रोलियम मतलब की यहाँ पेट्रोल पंप है यहाँ पे एक पेड़ लगा गया है पेड़ जो है काफी मोटा है और कांटेदार है।

यहाँ पर बहुत सारी स्कूटी रखी गई है और कुछ बाइक्स भी रखी गई है और ऊपर की साइड में एक बेनर लगा हुआ है जिसपे लिखा है वेलकम टू राज औटोमोबाइल्स मतलब की यहाँ पे बहुत सारा शोरूम है गाड़ियो का।

फुटपाथ में खड़े हुए हैऔर कुछ लोग आपस में चर्चा कर रहे है कुछ लोग बैठे हुए है यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं काफी बड़े-बड़े हैं रेलवे स्टेशन भी है।

यहाँ पर बहोत सारे डेस्क रखी गई है देखने पर लग रहा है यह कोई रेस्टोरेंट है चेयर भी रखी गई है चेयर जो है प्लास्टिक की है और काले कलर की है सामने की ओर में एक बोर्ड लगाया गया है जिसपे लिखा गया है रेस्टोरेंट यानी फैमिली रेस्टोरेंट है।

यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है पेट्रोल पंप काफी बड़ा है बहोत अच्छा तरीके से बनाया गया है ऊपर की साइड में लाइट लगाई दिखाई दे रही है जिसमें रेड कलर है और नीला कलर है यहाँ पर मोटे-मोटे खंबे बने हुए हैं देखने पर लग रहा है कि यह रात का समय है।

और यहाँ पे बैठने के लिए कुछ चेयर भी डली हुई है जिसमें टाल्स लगाए गए है। सामने एक खिड़की--